एवं उसपर एक पोस्टर भी लगा दिखाई दे रहा है।

यह चित्र में एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान में एक काउंटर है काउंटर सफेद पीला और लाल रंग का ह--

एवं एक लाइट भी दिखाई दे रही है।

और यहां पे सीढ़ी में चढ़ा हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है और एक पुरुष जो रोड पे चलता दिखाई दे रहा है।

यह चित्र में बहोत ही खूबसूरत पंडाल सजाया गया है एवं बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून लगाएं गए हैं।

एवं एक फूल भी है।

छोटी बड़ी बहोत सारी मछलियाँ दिखाई दे रहे हैं।